और साइड में खिड़की है गैस सिलेंडर बना हुआ है साइडो में मकान एक बिल्डिंग बनी हुई है उसमे खिड़की दिख रही है एक येलो कलर का कुछ-- --

पेड़ लगे हैखिड़की के साइड मे एक घर है डिश टी_वी पेड़ लगे हुए है एक दरवाजा है साइड मे क्रीम कलर का दरवाजा है।

आदमी के साइड मे पथर पड़े हुए है बहुत सारे घास लगे हुए है थोड़ी कच्ची मिट्टी और बड़े बड़े पेड़ लगे--

आस-पास की तरफ है लोहे का लगा हुआ है एक दरवाजा दिया है एक औरत चल के जा रही है ऊपर की तरफ तार लगे हुए है।

इ हॉस्पिटल है डॉक्टर एस कुमारी का लिखा हुआ है व एक दूसरे साइड पे बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर उस नीचे के तरफ एक पिलर बना हुआ है कलश बना हुआ है।